पर बादल भी नीला कलर का है और वाइट कलर में अच्छा काफ़ी नजारा अच्छा लग रहा है ये।

यहाँ पे एक ई-रिक्शा खड़ा हुआ है और एक साइकिल खड़ी हुई है और यहाँ पे बैटरी वाली स्कूटी भी खड़ी हुई है एक हरी कलर में और एक सफ़ेद कलर में एक काली कलर में पोस्टर में भी--